सामने एक डब्बा है पीछे एक दुकान हे उसके आगे--

नारियल का झाड़ है केले का झाड़ है पिंक कलर का फूल है।

लोग सेवा केंद्र है ग्राहक सेवा केंद्र है--